और कुछ पेंटिंगें भी बनी हुई हैं। साइडों में बोहोत ही हरी हरी घासें हैं और खम्भें भी लग रहा हैं और कलर ओ कलरफुल लग रहा है औ --

यह दिखने में बहुत से खूबसूरत लग रहा है और टी.वी वगेरे भी मिलती हैं एम.आई स्टोर इसका नाम है जो के दिखने में बहुत ही खूबसूरत --